मुझे कट्टे दिख रहे हैं चार और बगल में टमाटर है।

सामने मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है बड़ी सी व्हाइट कलर की।

जस्ट उसके नीचे एक आदमी जिसने पैंट शर्ट टी शर्ट पहना है।

सामने मुझे एक शॉप दिख रही है जिस पर कांच का गेट लगा हुआ है।

बगल में मुझे दो गेट दिख रहे हैं जिनका कलर ब्राउन कलर का है।

जिसमें दो स्टाफ खड़े हुए हैं जिन्होंने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहना है उन्होंने आइडेंटी कार्ड लगाया है।

साइड साइड में पहाड़ है और मुझे पत्थर दिख रहे हैं।

इसमें ब्लू और वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई है।

आगे मुझे तीन सिलेंडर दिख रहे हैं बड़े बड़े और पीछे येलो कलर का कर्टन हैं।

ब्लैक कलर की कैप लगाई हुई है और सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने ग्रीन कलर का शर्ट और नीचे ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ है।

इस पर एक व्हाइट कलर का बेड पड़ा हुआ है उस पर पिलो रखी हुई है ग्रीन कलर की।

सामने मुझे एक रूम दिख रहा है जिस पर एक बैड पड़ा हुआ है हॉस्पिटल का।

सामने दो गेट हैं और एक पानी का बोतल दिख रहा है।